इस दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर देखिए ये एक बहुत--

जैसा की इस दृश्य में हम देख पा रहे है ये मंदिर के बाहर का दृश्य --

जैसा की इस द्र्श्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर ये ऊंचे से पहाड़ी जैसी दिख--

रखे है और कोनट्रक्टर भी कुछ समान रखा हुआ है यहाँ पर एक औरत की डमी खड़ी हुई है जिसने की जंपर ओर पिलजो पहना हुआ है।

जैसा की इस द्र्श्य में हम देख पा रहे है ये एक मंदिर का द्र्श्य है यहाँ--

पर देखिये बहोत सारी लाइटों से मंदिर को सजाया हुया है और यहाँ पर बहुत सारी औरते भी--

में हम देख पा रहै है यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में ऊपर की तरफ़ --

इस द्र्श्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर ये एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई है यहाँ --

और ये दुकाने बनी हुई है यहाँ पर दोनों दुकानों--

--के ऊपर हीरो का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर देखिए बहोत--

इस द्र्श्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर देखिए ये बहोत सारे मजदूर दिखाई दे रहै है ओर यहाँ पर बहोत सारी गिट्टियों का ढेर पड़ा हुआ है कुछ इंटे भी पड़े हुए है यहाँ पर बिजली का एक खंभा भी लगा हुआ है और यहाँ पर बल्ली पटरे का एक दी ज़ीना जैसा बना हुआ है जिस पर की एक मज़दूर चड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

द्र्श्य में हम देख पा रहैहै यहाँ पर देखिये ये एक मेज़ पड़ी हुई है मेज़ पे राधा कृष्णा जी की मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर देखिये कृष्ण जी ने बासुरी पकड़ी हुई है ओर सामने की तरफ दीवार पे सींदरी लगी हुई है पीछे की तरफ एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जैसा की इस द्र्श्य में हम देख पा रहे है ये एक चौड़ी सी रास्ता है यहाँ पर किनारे की तरफ देखिए दुकाने बनी हुई है और एक बहोत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ ठेले भी लगे हुए है सामने की तरफ एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पर किनारे की तरफ एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

द्र्श्य मे हम देख पा रहे हे ये एक सलून है| यहाँ पर देखिए कुर्सिया पड़ी हुई है ओर एक आदमी बैठा हुआ है| आदमी के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है| दूसरा आदमी उसके बाल काटते हुए दिखाई दे रहा हे| सामने की तरफ भी एक आदमी दिख रहा हे। यहाँ पर लाइटे जल रही हे| छत मे एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है।

चिकित्सालय है यहाँ पर देखिये शासकिए ज़िला चिकित्सालय लिखा हुआ है बाहर की तरफ ये एम्ब्युलेन्स खाड़ी हुई है और भी गड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिये पेड़ भी लगे हुए दिख रहै है पीछे की तरफ कुछ गड़िया खड़ी है।

द्र्श्य में हम देख पा रहे हे यहाँ पर सामने की तरफ एक पहाड़ी जेसी दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए ये कुछ पत्थर भी पड़े हुए है ओर पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हे यहाँ पर देखिये एक मूर्ति भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हम देख पा रहै है ये एक शादी का हाल है यहाँ पर देखिए इसके बाहर की तरफ ये एक बहोत अच्छा सा गेट बना हुआ है यहाँ पर रंग-बिरंगे फूलों से इसको सजाया हुआ है यहाँ पर लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है ज़मीन बर हरे रंग का मैट बिछा हुआ है ओर एक कुर्सी पड़ी है जिस पर की एक चोकीदार बैठा हुआ है।

चाय की दुकान है जिसका नाम आर. के. कॉफी स्टॉल लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए दो आचार दानी रखी हुई है जिसमें की बिस्किट रखे हुए दिखाई दे है और यहाँ पर पानी की बोतले ओर ग्लास भी रखा हुआ है सामने की तरफ बेंच पड़ी है जिस पर की आदमी बैठे हुए है और एक लड़का खड़ा है जो कि चाय पीता हुआ दिख रहा है।

इस द्र्श्य में हम देख पा रहे हे यहाँ पर देखिए ये बाउंड्री बनी हुई हैं जिसमें की बीच-बीच में--

चक्र को सफ़ेद और हरे रंग से रंगा हुआ है बाउंड्री में एक गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं जो हरे रंग से रंगा हुआ है पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ लगा हुआ है।

इस दृश्य मे हम देख पा रहै है यहाँ पर ये एक बहुत चौड़ी सी सड़क है किनारे की तरफ देखिए--

जैसा की इस दृश्य में हम देख पा रहै है ये एक बहुत बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है यहा पर देखिए दूर पर बहुत बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए है और यहा पर देखिए ये एक थोड़ी सी दीवार बनी हुई दिख रही है दीवार के पास में बुहूत बड़े-बड़े से पेड़ दिख रहै है और ए कुछ पेड़ो में फूल भी लगे हुए है।

और दोनों तरफ स्टूल रखे हुए दिखाई दे रहै हैं।

खड़ी है और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ बिजली के तार दिखाई दे रहे है।

इस द्र्श्य में हम देख पा रहै है यहाँ पर देखिए सामने की तरफ एक मूर्ति लगी हुई है ओर बहुत सारी लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए हमर सँवरता सुकमा लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ एक पेड़ लगा हुआ है।

जैसा की इस द्र्श्य में हम देख पा रहे है ये एक बहोत बड़ा सा हाल बना हुआ है यहाँ पर देखिए सामने बीच मे इसमें एक बहोत बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है किनारे की तरफ एक खिड़की है यहाँ पर एक स्टूल रखा हुआ है जिस पर की एक आदमी बैठा हुआ है ज़मीन पर बहोत सारा समान पड़ा हुआ है और दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

परदे के सामने की तरफ बहुत सारी घाँस लगी हुई हैं और घाँस मे कुछ--